यहां पर इसका लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई--

गई है यहां पर लोहे के पाइप भी लगे हुए दिखाई--